और यहाँ पे सामने में एक रेड कलर का भी कुछ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कुछ --

लाइट भी ऊपर मे जल रहा है कुछ दिखाई दे रहा है | यहाँ पे ना यहां पे कुछ ऊपर में टंगा हुआ दिखाई दे रहा है और लाइट भी जल रहा है और यहां पर --

पहाड़ दिखाई दे रहा है पहाड़ में एक रास्ता भी दिखाई दे रहा है गेट जैसा है ऊपर में ।